सामने एक पुस्तकालय भवन है ।

ईसु की मूर्ति भी बनी हुई है ।

यहाँ स्टे भारतीय स्टेट बैंक की पोस्टर लगी है।

बिल्डिंग की पिलर के लिए छड़ ते बंधी हुई है।

उसके आगे एक व्यक्ति ए कैप पहने हुए और जैकेट पहने हुए है खड़ा है।

जो काफी कलरफुल दिख रहा है ।

होटल में खा खाने बने के साथ साथ बातचीतें भी हो रही है।

बिल्डिंग की पेंटिंग सफ़ेद और लाल रंग की है ।

जिसमे फोर जी का टैग लगा हुआ है।

इसमें सीसु टी की प्रचार अ की हुई है।

वे पेड़ के वृक्ष के नीचे प अ बै सोये है।

पार्क के में के बीचो-बीच हरे-हरे घासों से अ सजी हुई है।

यह एक सिनेमा घर की सीन है ।

ये सभी अलग- अलग मॉडल और अलग - अलग रंग की खड़ी है।

अ उसमे सीमेंटेड की बनेगी पिलर खड़ी है।

नाव को आदमी नि-निकालने के लिए एक हुक को जमीन से गड़ी हुई हुक को निकाल रहा है ।

यहाँ सामने एक बाइक खड़ी है ।